और सामने मुझे एक पुजारी दिखाई दे रहा है।

कुछ बोरिया रखी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर सामने एक सड़क दिखाई दे रही है।

और सामने मुझे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

और सामने मुझे एक गाड़ी पर आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

सामने मुझे बहोत सारी सब्जियां रखी दिखाई दे रही हैं।

पीछे मुझे सामने दीवाल पर कुछ चित्रकारी बनी हुई नज़र आ रही है।

और मुझे एक रोशन चाय सेंटर की दुकान नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर सामने कुछ कोट टंगे हुए नजर आ रहें हैं।

सामने मुझे एक टेबल पर लाल कपड़ा बिछा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर कुछ टेबल रखी दिखाई दे रही है।

दुकान पर मुझे कुछ दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है।

और मुझे कुछ पटरियाँ नज़र आ रही है।

पिंक कलर का एंट्रेंस गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान पर मुझे सामान जमा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक दवाई की दुकान दिखाई दे रही है।